अम अम मैच सबसे बढियां होता हैं और स्पोर्ट्स सबसे मस्त होता हैं और बच्चे खेलते हैं और सेहत के लिए सबसे लाभदायक होता हैं। कृपया इसको बढावा दे जय हिंद।

यह स्कूल सबसे बढ़िया है बेस्ट स्कूल है। यहाँ पढ़ाई एजुकेशन सबसे मस्त चलता है और यहाँ का फंक्शन जो है सबसे बढ़िया हो रहा है और इसको इस स्कूल को ट्रस्ट ले लिया जाये। जय हिंद।

ये मैरिज हाउस सबसे बड़िया (बढ़िया) हैं। भाई साहब बहुत बड़िया (बढ़िया) फ़ोटो खिचवा रहे हैं और सबसे बड़िया (बढ़िया) है सुंन्दर है। इनको लाइक किया जाये और यहाँ भोजन सबसे बड़िया (बढ़िया) होता हैं। केटरिंग सब बढ़िया जय हिन्द जय भारत।